इस पर आइसक्रीम मिलती हैं और उधर एक कूड़े का--

ये पार्किंग है पार्किंग के ऊपर छाया भी बनी हुई है और बाइक कार आगे बाउंड्री है और पेड़ों की छाया में और गाड़ियां भी खड़ी है आगे --